कुछ दुकाने दिखाई दे रही हैं आदमी दिखाई दे रहें हैं साइकल दिखाई दे रहे हैं कुछ दुकाने दिखाई दे रहीं हैं बादल दिखाई दे रहा आकाश दिखाई दे रहा है। बा --

साइड में एक पेड़ लगा हुआ है जिसके नीचे कुछ आदमी ओरत बेठे हुए है पेड़ हर भरा है बादल दिखाई दे रहे है और वह बैंक --